ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में बहोत सारी सजावट की गई है अंदर में बहोत सारे झूमर लगाए हुए है।

यहाँ पे दूर-दूर में बहोत सारे छोटे-बड़े घर दिखाई दे रहे है और यहाँ पे खेत भी दिखाई दे रहे है और बड़े-बड़े यहाँ पे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा सा ग्राउन्ड है ग्राउन्ड के उस पार बहोत बड़ी सी एक बिल्डिंग है अगल-बगल में अ यहाँ पे बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है और ग्राउन्ड मे यहाँ पे कुछ जगह पे घास हुई है और कुछ जगह पे यहाँ पे खाली है।